इस तस्वीर में मारुति सीजुकी की अधिगृत डीलरशिप आभरण मोटर सर्विस सेंटर का--

जो हम अपने फोन चार्ज में यूज कर सकते हैं और साथ में पेन ड्राइव --

इस छवि में एक फादिया दो हजार पचास--

के लिए निंदा में सहायता के लिए डिजाइन किया गया।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यहां स्कूल में कुछ प्रतियोगिता--

कल कुछ सुविधाएं दिखाई दे रहा है इमारत का विवरण काफी--

यह तस्वीर देखने से लगता है यह किसी पुस्तकालय की तस्वीर है यहां एक--

युवक एक किताब लेकर खड़ा है जिसके हाथ में घड़ी है और पीछे काफी किताबों का भंडार भरा हुआ है।

रेको में काफी अच्छे से किताबों को जमाया गया है यहां इतिहास की भी किताबें उपस्थित हो सकती है।

में दिए गए पाठ के आधार पर यह--

इस छवि में एक पीसने वाली मशीन दिखा--

जहां लोग एक्सरसाइज करने आते होंगे और यहां--

एक्सरसाइज़ मशीनें भी रखी हुई है। साथ में यहाँ रनिंग के लिए भी मशीनें रखी हुई है।

दुकान है जहाँ पर तरह तरह के सोफे और कुर्सियाँ रखी हुई है कुछ लकड़ी की कुर्सियाँ है कुछ फाइबर से बनी हुई --

और यहां पर दो छठ माता की मूर्तियां है एक मूर्ति छोटी और एक मूर्ति का आकार काफी--

ये से रिलेटेड कोई चिकित्सालय है। जहां पर--

यहां पर सिखाया जा रहा है यहां चार लोग बैठे हुए हैं जो बड़े--

ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं और दीवार पर कुछ पीछे कुछ लिखा--

चावल रखे हुए हैं या तो ये राइस फ्राई है।

और यहां पर पानी की टंकी भी दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर तेलंगाना के वेमुलावाडा में श्री राज राजेश्वर स्वामि मंदिर को दिखाती हैं। यह मंदिर भगवान--

ताहा सरडक निर्माण के लिए सर्वेक्चा भूमि के एक क्षेत्र के विवरन को--